और सामने का बोर्ड लगा हुआ है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा पेड़ खड़ा हुआ है।

और वह बहोत उचाई पे है। नीचे एक हरयाली दिख रही है और बहोत बड़ा खेत सामने नजर आ रेआ है।